और नीचे कारपेट बिछाया गया और ऊपर लाइट भी लगे हुए हैं बहुत सारे और दीवालो पे इनके पोस्टर भी चिपका हुआ हैं।

और यह गुब्बरों से नीचे भी सजाए गए हैं और ऊपर भी सजाए गए हैं गुब्बरों का कलर है ब्लैक और येलो कलर के हैं।

यहां पे प्रोग्राम हो रहा है और झंडा फहराने के लिए तैयारी कर रहे हैं।

बच्चे भी खड़े हैं और एक लेडिस साड़ी पहनी हुई है और एक लेडिस सूट पहनी हुई है।

यहां पे मेज रखा हुआ है और सामने मटका रख हुआ है और टाइल्स से बना हुआ फर्श--

लैंड करने जा रही है और सामने बदल दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक --

ये बाहर देख रहे हैं जो की रोड है और अगल बगल में--

है उसके पीछे का किनारे रोड है बना हुआ कच्चा रोड है।

और टेबल है एक उसपे बहोत सारे सामान रखें हुए वजन करने वाला मशीन है।

और खिड़कियां भी दिख रही हैं जहां पे पर्दे लगे हुए हैं और एक दरवाजा है जहां पे मतलब--

और उसके बगल में एक एल_आई_सी ऑफिस है बहुत बड़ी और बहुत सारे लोग अंदर गए हैं और--